इस इमेज में एक गै गैरेज का सीन दिख रहा है जिसमें एक कार है एक--

पीछे लाइट दिख रहा है जो कपड़े पर रिफ्लेक्ट कर रहा है जिसे--

और पीछे साइड में देवता दिख रहे उनके रिलीजन का।

कोई इंसान बाइबल पकड़ के पड़ रहा है और एक आदमी मास लगा कर पहना है।

और पीछे भी पोस्टर लगा है वो भी जिम का लड़का लग रहा--

जिसमें एक ब्लैक बस है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में स्माल मिनी मिनी ।

इसमें एक वॉटरफॉल नीचे आ रहा है।

साथ में एक हैमर और दो तीन कुछ लकड़ी के समान है।

रिवर पूरा--

का सीढ़ी बनाया गया है जो उस स्टेप खाली है कोई ह्यूमन नहीं है।

जिस पे एक लकड़ी का नाव है।

फूल वगैरा खरीद रहे हैं।